यहां एक व्यक्ति बैठा दिखाई दे रहा है। ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है। जिस पर मानसरोवर स्टेशनरी लिखा है। सामने एक जिना दिखाई दे रहा है।

सामने एक पुल दिखाई दे रहा है और यह लड़का है यह काफी बड़ा है।

यहाँ काफी सारे शीशे लगे हैं। सामने एक एलईडी दिख रही हैं और यहाँ पर काफी सारे स्प्रे बोतल रखी हैं।